यह एक मशीन दिखाई दे रही है जहां पर खूब सारे नट बोल दिखाई दे रहे है और बा--

यहां पर अलग अलग प्रकार की मच्छियां नजर आ रही है जो की कैरेट के ऊपर रखकर कुछ लोग मछियां बेच रहे हैं।

और छोटे छोटे लाइन से पूरे पेड़ लगे लगे हैं यहां पे--

यहां पे दो कलम दिख रही है पेड़ की जिसके बीच मे एक छोटा बच्चा खड़ा है ऑरेंज कलर की टी शर्ट --